दिखाई दे रहा है यह टूटी बस दिखाई दे रही है स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जो लाइट ग्रीन और ग्रीन दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे यहाँ पे कुछ चित्र बनी हुई दिखाई दे रहे है।

कलर दिखाई दे रहा है और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा है यहा पे पेन्ट भी स्काय ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा टी_वी दिखाई दे रहा बहुत सारे बॉटल्स दिखाई दे रहे पानी बोटल दिखाई दे रही चेयर दिखाई दे रही फैन दिखाई दे रहा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा येल्लो कलर दिखाई दे रहा है।

और ये नीचे ग्रीन और ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है। जिसमे पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। और बहुत खुछ दिखाई देर रहा है।

पिंक और ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। पिंक और स्कायब्लू कलर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है पैंट दिखाई दे रहा है निचे ब्राउन और चॉकलेटी कलर दिखाई दे रहा है और भी बोहत कुछ दिखाई दे रहा है बोहत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा हैं। आसमान दिखाई दे रहा है बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है ब्लू कलर नेविब्लु कलर का दिखाई दे रहा है और